यहा एगोट सलून हे जहां ऊपर मे पंखा लागिसे लाइट बरथे।

लईका होइसे पिछु कती बड़का-बड़का आदमीमी मनन हवे आधा झन फुल तोडत हे आधा झन थढोईन हे अउ बहुत ज्यादा फुल लगाईंन हे कुछ महिला मन वो जगह टहलत हे।

छट के पूजा के जेतना भी सामान लागथे ओला लानिन हे बइठ के सर ला अपन घूंघट डालिन हे।